जगह है जहां पे वहां पे ये कॉर्नस लगा रखे गए हैं।

और इसके साइड में कूड़ा ही कूड़ा है।

जो क्रीम कलर का है और वह बैठा हुआ है इस पेट्रोल पंप पर कोई भी गाड़ी नहीं है।

होटल है जहां पे यह कुछ लोग खाने के लिए आए हैं।

और वहां पे पिंक कलर की डेकोरेशन भी की गई--

एक रूम है जहां पे बच्चे बड़े एक साथ में डांस कंपटीशन ये सीख रहे हैं।

वहां पे एक स्कूटी है जिसका कलर मैरून है और गाड़ी का कलर व्हाइट ।

जो कि ग्लास के है और वहां पे वॉच भी गोल्डन कलर की है।

जहां पे एक फेडरल बैंक है जो की एक बड़ा सा बोर्ड है।

जिसपे लिखा हुआ है फेडरल बैंक ।

सफेद कलर की जिसके हाथ में एक गोल्डन कलर की बांसुरी है।

और आधों को रेड ये टी शर्ट और ब्लू कलर का ट्राउजर लगा कर है।

और नीचे है मिस्टर अमित ए मोहित ट्रैक्टर --

और दूसरी साइड से वहां पर पानी है और वहां पर कुछ पेड़ भी हैं।

ये एक पिकनिक स्पॉट है जो कि बहुत ही डरावनी लग रही है।